यहां पर एक तलाब है।

यह एक मस्जिद है।

यहां पर एक जंगल दिख रहा है।

फल का ठेला लगा हुआ है।

बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहां पर रोड दिख रहा है।

यहां पर हेल्मेट रखा हुआ है।

यहां पर थम्सअप का बॉटल रखा है।

यहां पर बॉक्स लगा है यहां पर लाइट लगा हुआ है।

पर्स दिख रहा है।

बहोत सारा बाईक दिख रहा हैं।

यहाँ पर टेबल दिख रहा है।